पार्क के अंदर एक औरत लाल कलर का सूट पहने बैठी हुई है।

बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है।

हॉल के अंदर बहुत सारी सफेद कुर्सियां पड़ी हुई है।

पेड़ के आगे दो मोटरसाइकिले खड़ी हुई है।

सामने एक मैरिज हॉल --

दुकान के सामने पेड़ भी खड़ा हुआ है।

दीवाल के सामने कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है।

एक दुकान है दुकान के अंदर बैग टंगे हुए हैं।

मोटरसाइकल के सफेद पट्टी पर कृषकी लिखा हुआ हैं।

मकान के एक व एक मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई है।

दुकान के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए है।

एक दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक गाड़ी के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लिखा हुआ है।

कुर्सी के सामने एक मेज--

अलमारी के बराबर में लाल कलर का एक शीशा रखा हुआ है।

के अंदर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई है।